यहां पे आप देख सकते हो ये बहोत अच्छा घर देख रहा है।

ओर यहां पे आप देख सकते हो ये पेड़-पौधे लगे हुए हैं और यहां पे देख सकते हो--

ये छोटा सा बैंड एक्स भी रखा हुआ हैं बैठने के लिए मो--

हुए है यहां पे साइकिल भी है।

लिखा हुआ है और यहां पे ये दो तीन आदमी खड़े हुए हैं।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

चारों में तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है।

भारतीय लिखा हुआ है और यहां पे ये ट्रेन है और पटरी पे चल रही है ट्रेन है और यहां पे देख सकते हो चारों तरफ--

गद्दा है और यहां पे किवाड लगे हुए हैं यह किवाड यह गेट है यह गेट काठ का है और यहां नीचे एक और --